classes बनाने पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न के बारे में सीखेंगे
वास्तविक संसार में class
java में class
java class की संरचना
java class के लिए syntax
और java class का एक साधारण उदाहरण
यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं
इस tutorial का अनुकरण करने के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए कि eclipse में एक सामान्य java program को कैसे लिखें कंपाइल और रन करें
यदि नहीं तो कृपया spokentutorial org पर उपलब्ध इन विषयों पर spoken tutorial देखें
अब देखते हैं कि वास्तविक संसार में class क्या है
इस संसार में जो भी हम देख सकते हैं सभी objects हैं
और सभी objects को विशेष समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है
प्रत्येक समूह को एक class के रूप में देखा जाता है
उदाहरणस्वरूप मानव एक class है
हम सभी इस class के भिन्न objects हैं
हम सभी के पास भिन्न properties हैं जैसे आँखें पैर हाथ आदि
जो कि मानव class के लिए human है
देखना खाना चलना आदि व्यवहार हैं जो कि मानव class के लिए human हैं
अब देखते हैं कि java में class क्या है
class बनने वाले प्रत्येक objects का एक blueprint है
java class की संरचना class परिभाषित करता है कि
properties के set को variables कहते हैं
और behaviors के set को methods कहते हैं
अब classes को घोषित करने के लिए syntax देखें
modifier – classclassname curly brackets में variable constructor और method declarations
इनके बारे में हम आने वाले tutorials में सीखेंगे
अब eclipse का उपयोग करके एक साधारण class बनाएँ
मैंने eclipse पहले ही खोल दिया है
अब एक project बनाएँ
अतः file पर click करें new पर जाएँ और java project पर click करें
new project wizard में c और d बडे अक्षर के साथ project का name classdemo प्रविष्ट करें
फिर finish पर click करें
हम देखते हैं कि project classdemo बन गया है
अब हम student named एक java class बनायेंगे
classdemo पर दायाँclick करें new पर जाएँ और class पर click करें
new java class wizard में name के रुप में student type करें
हम देख सकते हैं कि modifier यहाँ public है
यह दर्शाता है कि class हर जगह सभी classes पर दर्शनीय है
यदि class में modifier नहीं है जो कि default है तो यह केवल इसके अपने package में दिखाई देता है
packages के बार में हम अगले tutorials में सीखेंगे
यहाँ मैंने public चुना है
method stubs में public static void main चुनें
फिर finish पर click करें
हम देख सकते हैं कि student named class बन गया है
अब मैं comments हटाता हूँ
student class में properties जैसे name roll number marks आदि सम्मिलित हो सकती हैं
अतः student class में मैं दो variables roll number और name घोषित करता हूँ
अतः मैं type करूँगा int roll underscore number semicolon
string name semicolon
अतः मैंने दो variables घोषित किये हैं
अब एक class में methods सम्मिलित होते हैं
अतः अब studentdetail named एक method बनाएँ
यह method प्रत्येक student का विवरण देगा
अतः type करें void studentdetail फिर opening और closing brackets curly brackets खोलें
अब यह method student का roll number और name देगा
अतः type करें system dot out dot println brackets और double quotes में the roll number is हम इसे number भी type कर सकते हैं; double quotes को बंद करें plus roll _ number semicolon
अगली line type करें system dot out dot println brackets और double quotes में the name is plus name और semicolon
double main method में हम type करेंगे system dot out dot println brackets और double quotes में we have created a class with two variables and 1 method
इस प्रकार हमने class student बनाया
अब मैं control और s कीज को एक साथ दबाकर file को सेव करुँगा
control और f11 कीज को एक साथ दबाकर program को run करें
हमें output प्राप्त होता है we have created a class with 2 variables and 1 method
जैसा हमने main method में टाइप किया था
इसी प्रकार हमने सफलतापूर्वक class बनाया है
अतः इस tutorial में हमने java में class और class बनाने के बारे में सीखा
स्वमूल्यांकन के लिए variables emp underscore number और emp underscore name के साथ employee named एक class
और method printemployee बनाएँ जो employee जानकारी दर्शाए
spoken tutorial project के बारे में अधिक जानने के लिए
इस लिंक पर उपलब्ध video देखें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
spoken tutorial project team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
online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं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
अब हम इस tutorial के अंत में आ गये हैं
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद